नमस्कार ubuntu linux desktop 1604 पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम gnome environment पर ubuntu linux desktop
और ubuntu desktop पर कुछ सामान्य applications के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं ubuntu linux 1604 o s का उपयोग कर रही हूँ
ubuntu desktop इस तरह दिखता है
आप screen के बाईं ओर पर launcher देखेंगे
how launcher को कैसे छिपा सकते हैं
ऐसा करने के लिए बाईं ओर launcher पर जाएं system settings icon पर क्लिक करें
system settings window में appearance पर click करें
appearance window में behavior टैब पर click करें
यहाँ autohide the launcher को on पोजीशन में switch करें
अब launcher छिप जाएगा
यदि launcher छिप जाता है जैसा यहाँ दिखाया गया है तो हम इसे फिर से visible कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए screen के सबसे बाईं ओर cursor ले जाएं
launcher visible होगा
cursor हटा दें और launcher फिर से छिप जाएगा
वापस appearance window पर जाएं और autohide the launcher को off कर दें
window की ऊपरी बाईं ओर पर छोटे x icon पर क्लिक करके इस window को बंद करें
ध्यान दें default रूप से launcher पर कुछ icons हैं
launcher के ऊपर आप dash home icon देख सकते हैं
dash home एक interface है जो screen पर ubuntu linux में सभी applications के लिए access देता है
dash home खोलने के लिए इस पर click करें
मुख्य रूप से ऊपरी ओर आप एक search bar field देखेंगे
अब हम किसी विशिष्ट application पर कैसे जाएं जो application आपको चाहिए केवल उसका name type करें और आप उसे तुरंत पायेंगे यह इतना आसान है
calculator application पर जाने की कोशिश करते हैं
search bar field में type करें c a l c
सभी applications जिनके name में c a l c होगा सूचीबद्ध होंगे
यहाँ ध्यान दें libreoffice calc और calculator दोनों सूचीबद्ध हैं
calculator icon पर click करें calculator एप्लिकेशन अब स्क्रीन पर खुलता है
calculator अंकगणित वैज्ञानिक या वित्तीय गणना करने में मदद करता है
कुछ साधारण गणना करते हैं
type करें 5 asterix 8 और equal to चिन्ह पर click करें
equal to चिन्ह पर क्लिक करने के बजाय आप keyboard पर enter की भी दबा सकते हैं
उत्तर calculator पर प्रदर्शित होता है
इसी तरह हम calculator application का उपयोग करके सभी प्रकार की गणना कर सकते हैं
अब window के ऊपरी बाईं ओर पर छोटे x icon पर क्लिक करके इस calculator से बाहर आएं
ubuntu linux os में कुछ अन्य महत्वपूर्ण applications से परिचित होते हैं
उसके लिए हम dash home पर वापस जायेंगे
search bar में type करेंgedit gedit ubuntu linux os में default text editor है
text editor icon नीचे दिखता है इसे खोलने के लिए इस पर click करें
आप अभी screen पर क्या देख रहे हैं क्या gedit text editor window है
मैं कुछ text यहाँ type करती हूँ उदाहरणस्वरूप type करें hello world
file को सेव करने के लिए keyboard पर ctrl और s कीज एक साथ दबाएं
वैकल्पिक रूप से हम file और फिर save पर click कर सकते हैं
अब save as named एक dialog box खुलता है यह filename और स्थान के लिए पूछता है जहाँ फाइल सेव करनी है
hello txt name type करें
txt text file के लिए default extension है
और स्थान के लिए desktop चुनें तथा नीचे save बटन पर क्लिक करें
अब window के ऊपरी बाईं ओर पर x icon पर क्लिक करके gedit window बंद करें
desktop पर हम file hello txt देख सकते हैं जिसका अर्थ है हमारी txt file सफलतापूर्ण सेव हो गई है
इस पर double क्लिक करके file खोलें
देखें हमारी text file लिखे गए text के साथ खुल गई है
gedit text editor पर internet पर बहुत जानकारी है
यहाँ इस website पर इस विषय पर कुछ spoken tutorials भी उपलब्ध हैं
इस text editor को बंद करें और अन्य application देखें जो terminal है
अतः फिर से dash home पर जाएं अब search bar फिल्ड में terminal शब्द टाइप करें
terminal icon पर click करें जो नीचे दिखता है
terminal window screen पर खुलता है कृपया ध्यान the terminal को खोलने के लिए शार्टकट ctrl + alt + t कीज है
terminal को command line भी कहा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ से कंप्यूटर को command देते हैं
असल में यह gui से अधिक प्रभावशाली है
terminal window पर वापस जाएं
अब terminal का अनुभव लेने के लिए एक साधारण command type करें type करें ls और एंटर दबाएं
आप वर्तमान directory में सभी files और folders की सूची देख सकते हैं
यहाँ यह files और folders home folders से दिखा रहा है
home इस tutorial में बाद में देखेंगे कि home folder we है
हम अब terminal के साथ अधिक समय नहीं बितायेंगे
window के ऊपरी बाईं ओर पर छोटे x icon पर क्लिक करके terminal बंद करें
terminal commands इस website पर linux spoken tutorial की श्रृंखला में अच्छे से समझाए गए हैं
अब अन्य application पर जाते हैं जो है firefox web browser
एक bar फिर से dash home खोलें search bar में firefox type करें
firefox web browser icon पर click करें
firefox web browser का उपयोग world wide web को access करने के लिए किया जाता है अब हम web सकते हैं कि firefox browser विंडो खुला है
spoken tutorial website पर जाएं उसके लिए address bar पर क्लिक करें या कीबोर्ड पर f6 दबाएं
अब type करें spokentutorial org और enter दबाएं
यदि आपके पास internet connect है तो firefox दी गई website से connect होगा
spoken tutorial homepage browser पर खुलता है
पहले बताए गए अनुसार इसको बंद करें और अगले application पर जाएं
अतः फिर से dash home पर जाएं और search bar में office type करें
आप विभिन्न libreoffice घटक देखेंगे जैसे calc impress writer और draw
libreoffice ubuntu linux os में office application है
इन सभी घटकों पर बेहतरीन tutorials spoken tutorial website पर उपलब्ध हैं
अब video option देखते हैं
search bar में type करें video
प्रदर्शित सूची में हमारे पास एक videos named application है
videos video और गाने play करने के लिए उपयोगित है default रूप से यह केवल open format video files play करता है
मैं मेरे pendrive से एक sample file play करता हूँ
अब मैं मेरी machine पर usb slot में मेरा pendrive प्रविष्ट करता हूँ pendrive folder स्वतः ही खुलता है
यदि यह नहीं खुलता है तो हम इसे launcher से access कर सकते हैं
launcher पर pendrive icon पर जाएं
यदि हम इस पर click करते हैं यह pendrive पर उपलब्ध files और folders दिखाता है
अब मैं play करने के लिए big buck bunny ogv movie फाइल चुनूँगा
here file यहाँ है इसे खोलने के लिए मैं इस पर doubleclick करूँगा
यह default रूप से videos में खुलता है
movie प्ले करना रोकें
अब desktop प्राप्त करने के लिए ctrl windows और d कीज एक साथ दबाएं
अब इस desktop पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं
ध्यान दें folder icon launcher में मौजूद है इस पर click करें
home folder खुलता है
ubuntu linux में प्रत्येक यूजर का विशिष्ट home folder होता है
home कह सकते हैं कि home folder हमारा घर है जहाँ home अपनी files और folders रख सकते हैं जब तक home अनुमति नहीं देते अन्य उन्हें देख नहीं सकते हैं
file permissions पर अधिक जानकारी लिनक्स spoken tutorial श्रृंखला में उपलब्ध है
वापस जाएं
लिनक्स में सबकुछ file है इस पर डबलक्लिक करके desktop folder खोलें
यहाँ हम देख सकते हैं वही hello txt file जिसे हमने text editor से सेव किया था
यह folder और desktop समान हैं
अब folder बंद करें इस ट्यूटोरियल में इतना ही संक्षेप में
इस tutorial में हमने ubuntu desktop launcher और इस पर उपलब्ध कुछ icons
कुछ सामान्य applications जैसे calculator text editor terminal firefox web browser videos और libreoffice suite के घटकों और home folder के बारे में सीखा
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial पर कोई प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
minute और second का चयन करें जहाँ पर आपको प्रश्न है अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं हमारी टीम का कोई व्यक्ति उनका जवाब देगा
spoken tutorial forum इस tutorial पर विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को प्रशिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ